मंदिर वाइट रंग का पेंट है और बहुत सारे झंडे दिख रहे हैं और ऊपर में तार फार दिख रहे हैं।

और नीचे कुछ लोग जा रहे हैं और हर भरा पेड़ पौधे दिख रहे है।

और एक पर्दा दिख रहा है और कुछ लिखा हुआ है अंदर में बैठने वाला लगाया हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं जो कि छोटे छोटे और बड़े बड़े बनाए हुए हैं और बहुत ही डिजाइन से बनाया हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारी स्कूटीयां और लुने दिख रहे हैं और खिड़कियां दिख रहे हैं और रूम वाइट रंग से पेंट किया गया है।

इस चित्र में एक बहुत ही बड़ा घर दिख रहा है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां दिख रही हैं और आसमानी रंग से पेंट किया हुआ है।

इस चित्र में एक कपड़ा दुकान दिख रहा है जिसके मे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और ऊपर मे कुछ लाइटें जल रहे हैं।